खिड़की वगैरह दिख रही हैं नीले कलर मेंजामुनी कलर दिख रहा हैग्रीन कलर दिख रहा है। पेड़े दिख रहे हैं।

मऊरुति दिख रही है। धनुष बाण वगैरह दिख रहे हैं। कलर दिख रहा है ब्लैक कलर पीला कलर मंदिर टाइप के दिख रहे हैं। दो खंभे दिख रहे हैं।

मछलियाँ दिख रही हैं। पेड़ों में पानी दिख रहा है। ब्लैक कलर के पत्थर पड़े हुए दिख रहे हैं। बहोत सारे कलर दिख रहे हैं। डलिए दिख रही हैंदो-तीन जेन्स एक लड़की --

रोड दिख रहें है। रोड पे बहुत सारी गड़ियाँ दिख रहीं है। पीले पिंक कलर के मकान दिख रहे हैं। जेंट्स खड़े हुए ग्रीन कलर में --

जामुनी कलर दिख रहा खंभे दिख रहे हैं। तीन चार एक मकान दिख रहा उस पे एक बेल चढ़ती हुई दिख रही है।

दो लेडिसे खड़ी हुई दिख रही है। ब्लैक कलर पहना हुआ दिख रही है।

नीचे दुकान में भी बहुत सारी कपड़े टंगे हुए दिख रहे हैं। ऑटो टाइप का दिख रहा है।

कचरा वगैरा दिख रहा है। व्हाइट कलर में ग्रीन कलर दिख रहा है। क--

दो जेन्स खड़े हुए दिख रहे हैं। कलर दिख रहा है रोड पे --